इमारत नजर आ रही है सामने दोनों तरफ किनारे पे कुछ पेड़ पौधे और ये--

बिल्डिंग ब्लॉक्स है सामने दस बड़ी बिल्डिंग है जिसके आस पास कुछ पेड़ पौधे है।

स्टेज है जिस पर कुछ बच्चे खड़े हुए हैं उन्होंने कुछ कॉस्ट्यूमस पहनी हुई है रात का समय है।

पुणे की इमारत है जिसके आसपास काफी हरियाली है बड़े-बड़े पेड़ पौधे हैं।